इस फोटो में शुभ मेडिकल एजेंसी दिखाई दे रही है।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

टॉनिक दिखाई दे रही है मुझे इस फोटो पर--

कुछ खिड़कियां दिखाई दे रही है मुझे इस फोटो पर कुछ पेड़ दिखाई दे रहे है।

तीन चार के मंजिल घर दिखाई दे रहे है।

मुझे इस फोटो पर गुब्बारे की सजावट दिखाई दे रही है।